शायद किसी भी प्रकार की देवी देवता का गुफा है यहां लोग दर्शन करने के लिए आए हैं यहां--

ये एक टूरिस्ट प्लेस है किसी मंदिर का सीन है यहां भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है।

ये एक मेडिकल का सीन है यहां पे सारे लोग दवाई लेने आए हैं।

कुछ पंखे नया झूमर और भी कई चीजें शायद किसी पूजो का--